मझे एक सामने की तरफ एक घर नज़र आ रहा है जिसके ऊपर कुछ मझे तीन स्टार नज़र आ रहे है और तीन नोक बी नज़र आ रही है जिसके ऊपर मझे प्लस का नज़र आ रहा है और बीच वाले प्लस के साईन के बीच की तरफ मझे सर्किल सा भी नज़र आ रहा है।

सारी कुर्सियां नज़र आ रही है कुर्सियों के साथ मुझे वाइट कलर की कुर्सी भी नज़र आ रही है पीछे की तरफ मुझे एक स्टेज नज़र आ रहा है स्टेज के पीछे की तरफ मुझे पीले कलर का कुछ कपड़े स टाइप पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है।

सीडी की तरफ गडी हुई है उसकी तरफ ऊपर की तरफ दो तीन लकड़ियां सपोर्ट लेकर खड़ी हुई नजर आ रही है मौसम काफी साफ नजर आ रहा है।

लोहे का बना हुआ वो नज़र आ रहा है जोकि बंद है और पीछे की तरफ मुझे एक घर नज़र आ रहा है इसके सामने की तरफ मुझे कुछ चेयर नज़र आ रही है जोकि येलो कलर की चेयर है वहाँ से मुझे कोकोनेट के पेड़ नज़र आ रहे है ऊपर की तरफ सर का से सूरज भी काफी अच्छा लग रहा है।

मुझे काफी कासे नज़र आ रही है मुझे एक सड़क भी नजर आ रही है नीचे एक माउंटेन भी नज़र आ रहा है पीछे सब कुछ रेलवे की एक पटरी नजर आ रही है जो की थोड़ी सी दिखाई दे रही है मुझे मौसम काफी अच्छा नजर आ रहा है थोड़े-थोड़े बादल भी नजर आ रहे हैं।

और सीधे सीधे देखते जाए तो गेट काफी अंदर तक जाता हुआ नज़र आ रहा हैं और नीचे की तरफ मे एक कार्पेट बिछा हुआ नज़र आ रहा हैं फूल--